लेकिन अगल-बगल में बोहुत सारे बिजली के तार लगा हुआ है।

एक ऊपर मे दो दो लाल हरा कलर के झण्‍डा लगा हुआ है उसमें ॐ लिख --

दो मकान में रेड कलर के पीला कलर के एक वाइट कलर के है आगे।

नीले कलर के दो ऑटो लगा हुआ है सामान ढोने वाला ऑटो ।

इस पर बैठने में घूमने मे बहुत अच्‍छा लगता है एक बड़ा-सा दिखने में लग रहा है है।

अगल-बगल में बहुत सारे बड़े-बड़े से पेड़ है।

लोहे के ग्रिल से घेरा हुआ है बहुत सारे लाईट लगा हुआ है ।